यहां पर एक बहोत रात्री का समय है और यहां पे बहोत सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अगल बगल भी कुछ घर मकान दिलका मकान दिखाई दे रहे हैं।

पानी का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है सामने बहोत सारे यंत्र लगाए गए हैं और कुछ यहाँ पे रस्सियाँ वगैरह भी लगाई गई हैं जोकि लोहे की बनी हुई है अगल-बगल कुछ दिवाले दिखाई दे रही है। यह देखने मे बोह --